किसी बिल्डिंग का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके बाहर कुछ कांच की खिड़कियां बनी हुई है जिसके बिल्डिंग के बाहर लाल टंगी हुई दिखाई दे रही लाइट लगी हुई दिखाई दे रही नीचे एक-दो पिलर बनी हुई है जिसके ऊपर एक बैनर --

ऊपर कहीं काले कलर का पट्टा है जिसके अदर लाइट लगी हुई दिखाई दे रही पास मे खिड़किया दिखाई दे रही है और नीचे कुछ ड्रॉअर और कुछ टेबल बने दिखाई दे रहा जिसके ऊपर सामने--

भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है जो किसी के हाथ से बनाया गया है दिख रहा है उनकी मूर्ति के ऊपर कुछ पेंटिंग की दिखाई दे रही है उनके गले में कोई गमछा डाला हुआ दिखाई दे रहा है।

इसके आगे उसका इंजन बना उसके नीचे टायर लगे है उसके ऊपर कुछ कपड़ा डला हुआ दिखाई दे रहा है पीछे की साइड उसकी बगिया दिखाई बगिया दिखाई दे रही है।

यह किसी शोरूम में शॉप का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर नीचे की साइड में कुछ बैनर लगे दिखाई दे रहे है सामने कुछ --

पेट्रोल पंप का फोटो दिखाई दे रहा है जिसका अंतिम पिलर दिखाई दे रहा है जिस पे लाइट जलती हुई दिख रहे है ऊपर के साइड चद्दर शेड बना हुआ दिखाई दे रहा है व्हाइट कार है जिसमें लाइट जल रही है सामने बाहर का साइड --

पिलर बना दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक हाथ का निशान दिखाई दे रहा है नीचे पेट्रोल पम्प की दो मशीन दिखाई दे रही है पीछे की साइड लोहे की ग्रिल के --

शॉप के अंदर का फोटो दिखाई दे रहा है जिस के अंदर शॉप के कपड़े दिखाई दे रहा है उनके कुछ कपड़े--

ये होटल का रूम या किसी रूम का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके आगे बेड के ऊपर एक चादर पड़ी हुई दिखाई दे रही है दो पिलो व्हाइट कलर के दिख रहे हैं जिसके आगे दो कंबल दिखाई दे रहे हैं।

चेयर दिखाई दे रही है जिसके ऊपर एक व्हाइट कलर का बैग पड़ा दिखाई दे रहा है दीवाल के ऊपर खिड़की दिखाई दे रही है जो हो सकता है उजाला आते हुए दिखाई दे रहा है चादर के ऊपर कुछ आसमानी कलर की गोल-गोल डिजाइन बन बनी हुई दिखाई दे--

इसके ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है काले कलर का सामने बहुत बड़े पत्थर पड़े दिखाई दे रहे हैं नीचे कुछ पत्थर का पहाड़ जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है उसके पीछे भी बहुत सारी झाड़ियाँ और कुछ जंगल जैसा दिखाई दे--

इधर कोई शिराओ बनी हुई दिख रही है जिसके ऊपर लोहे का शेड डला चद्दर डले हुए है।

ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ऊपर की साइड वाशिंग मशीन बनी दिखाई दे रही है और नीचे की साइड में कुछ खोखे कार्टून रखे दिखाई दे रहे हैं।

ये किसी गाँव के अंदर का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके सामने कुछ घर बने दिखाइ दे रहे है सड़क और खम्बे दिखाई दे रहे है जाती हुई दिखाई दे रही है छत्त के ऊपर कुछ टावर बने दिखाई दे रहे है सामने एक--

पेट्रोल पंप का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके आगे दो पिलर बने दिखाई दे रहे है पीछे पेट्रोल की दो मशीन लगी दिखाई दे रही है आसपास लोग बहुत खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं सामने एक बैनर लगा दिखाई दे रहा है जिसके--